ये देख सकते है ये क्रिकेट का मैदान है और सभी लोग यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे है और देख सकते है सभी लोग देखने के लिए आये हुए है बहुत दूर-दूर से और देख सकते है कई लोग क्रिकेट खेल रहे है बहुत ही बड़ा मैच है।

बहुत ही बड़ा बनाया गया है और देख सकते है लाइट भी कई प्रकार के लगे हुए है बहुत ही बड़े सैलून है और देख सकते है बैलून से सजाया गया है।

ये बहुत ही बड़ा झरना है और बहुत है अच्छा दिख रहा है और देख सकते है पत्थल भी बड़े बड़े है।

ये देख सकते है यहाँ कई प्रकार के छोटे बच्चो के खिलोने है जोकि बहुत ही अच्छे लग रहे है और देख सकते है साइड में बुक भी रखे हुए है।